साइड साइड में बांध रखा गया है और कूछ बकरियाँ सफ़ेद तो कूछ भूरी और कूछ काले रंग की है।

कुछ मोटर साइकिल खड़ी हैं कूछ स्कूटी खड़ी हैं तो कुछ कार खड़ी हैं कुछ कार आ-जा रही हैं।

गुलाबी रंग की दीवाल है और यहाँ भगवान की बहुत सारी तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई हैं जिसपे कुछ फूलो की मालाएं चढ़ाई गई हैं बगल में एक --

कुछ ऊपर चढ़ के फिसलने वाले हैं कुछ ऊपर चढ़ के कूदने वाली हैं और इसके बगल मे कुछ छोटे-छोटे गमले लगाए गए हुए हैं |

और एक लड़का है जो कि फोटो ले रहा है और ऊपर झालरे बनी हुई है झालरो से सजाया गया है कुछ --

और कूछ सुनहरे रंग के उसपे खंजर बने हुए हैं और ऊपर कुछ फूलो की मालाएं लगी हुई हैं बहोत सारी फूलो की मालाओ से सजाया गया है।

ये एक बहुत पुरानी इमारत है जो कि आधी खली आधी बानी हुई है।

एक बहुत बड़ा गैरेज है जो की सीटों से बना हुआ है बहूत सारी सीटें लगी हुई हैं कूछ ऊपर सीटें लगी हुई हैं कूछ किनारे-किनारे सीटें लगी हुई हैं।

और नीचे एक लाल रंग की कारपेट बिछी हुई हैं और रंग-बिरंगे झालर ल लगे हुए हैं और बहुत से आदमी आ जा रहे हैं ।

गेट लगा हुआ है और बहुत सारे स्कूटी बाइक और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कुछ हेलमेट लगे हुए है कुछ आदमी बैग ले कर अंदर जा रहे है कुछ बाहर आ रहे है।

ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो की नीले रंग की निचे कारपेट और हरे रंग की कारपेट बिछी है ऊपर की ओर सीढियाँ जा रही है कैमरा लगा हुआ है।

ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और दिनांक डाली गई हुई है नीचे पता लिखा था होप स्कूल के बगल में सतसंग नगर राजा बाजार जहानाबाद ।

खड़ा है जिसपे एक टंकी थमा रहा है और बगल में एक और सफ़ेद रंग की बस खड़ी है।

और पीछे बहुत से पेड़ों का झुण्ड बना हुआ है।

ये एक नारंगी रंग की बनी हुई दो मंजिले ईमारत है जो की बहुत बड़ी है इसमें काले रंग की कुछ छड़े लगी हुई है और बीच-बीच में मुकिया बनी हुई है।

कुछ मोकिया गोल रंग की है तो कुछ टेढ़ी-मेढ़ी मोकिया है ऊपर --